इंद्रधनुष लिया हुआ है तलवार भी ली हुई है और यहाँ पर देख रहे हैं पीना भी लि --

ए पहरी इलाका है इसमे एक पीपल का पौधा है चार आदमी यहाँ --

यहाँ पर गाड़ियाँ भी लगी हुई है।

यहाँ पर एक घर बन रहा है। उस घर में दो आदमियाँ भी दिखाई दे रहा है।

और पार्ले जी बिस्कुट भी है कुरकुरे भी है और सब बिक रहा है इसमें ख़रीदाया --

यहां पर दिखाई दे रहा है बहुत सूंदर मूर्ति बना हुआ है यहां पर दुर्गा जी है गणेश जी है हनुमान जी है बजरंबली है।

वहाँ पर पेड़ ही दिखाई दे रहा है जो वो देखने से लगता है तार का है।